यहा मे बहुत सारा पत्थर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा केला भी दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है और बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

और टीना दिखाई दे रहा है सफेद कलर का और फ्लैग दिखाई पड़ रहा है जो ग्रीन ।

और एक कार दिखाई दे रहा है जो ब्लू और ब्लैक कलर का है और दो लड़का दिखाई दे रहा है जो सफेद और ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ--

वो पेपर दिखाई दे रहा है सफेद कलर का और एक प्लेट दिखाई दे रहा जो लोहा से बनाया गया है।

दिखाई दे रहा है जो ब्लैक और सफेद कलर का है।

दो कार दिखाई दे रहा है जो ब्लैक और सफेद कलर से बनाए गये हैं और एक लड़की दिखाई दे रहा है।

यहा मे एक गर दिखाइ पड़ रहा है जो सफेद और ब्लैक कलर का है।

फुल भी दिखाई दे रहा है ग्रीन और ब्लैक कलर का।

और एक टेबल दिखाई दे रहा है पिंक कलर का।

यहाँ में बहुत सारा घर दिखाई दे रहा है जो यल्लो और सफेद कलर से बनाया गया है।

और बुत सारा बैलून दिखाई दे रहा है सफेद कलर का और एक टावर दिखाई दे रहा है और बूत सारा तार दिखाई--

यहां हमें एक पेट्रोल दिखाई दे रहा है जो ब्लू और सफेद कलर से बनाया गया है।

ये एक घर है जो ब्लैक सफेद--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

यहां में एक घर दिखाई दे रहा है रेड कलर का और खिरकी भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है और बहुत सारा लड़का दिखाई दे रहा है।

जो ब्लैक और सफ़ेद कलर का कपड़ा पेहना हुआ है और बेग भी दिखाई दे रहा है।

पे से बनाए गया है और बहुत सारा प्लेट दिखाई दे रहा है सफेद कलर का।

ये एक घर है जो रेड कलर से बनाया गया है और दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

वो टोपी भी दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है और एक बाइक दिखाई दे रहा है जो सफेद और ब्लैक कलर से बनाया गया है और बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

दो तीन लड़का दिखाई दे रहा है।

टी_वी भी दिखाई दे रहा है और एक फेन दिखाई दे रहा है सफेद कलर का।

यहां मैं एक पुराना घर दिखाई दे रहा है।

एक फैन दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का और तार भी दिखाई दे रहा है।

और एक प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है।